और एक मंडप जैसे जेसे बनाए गए हैं इस जगह को इसके नीचे मे एक गमला रखा है जिसमे अ पोधे लगे हुए है।